ये बहुत सारे मशीन भी लगे हुए हैं ब्वाय गर्ल जिम कर रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे फूल लगे हुए है।

उसके बाहर बहुत सारे घर दिख रहे हैं बड़े बड़े।

यह एक जिम रूम है जो की बॉय और गर्ल दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं।

एक बुरा भी दिख रहा है।

पावरोटी दिख रहे हैं सभी खाने वाले समान दिख रहे हैं।

एक बोतल भी सारा बोतल भी है।

यह एक पेट्रोल टैंकर है।

यह एक जिम रूम है जिसमें बहुत सारे लाइट भी लगे हुए हैं दो रनिंग मशीन है।

इसमें एक गेट भी है टेबल भी है कुर्सी भी है।

आदमीन के बगल में एक मूर्ति है।

हाथ में बांसुरी लिए हैं उधर बोल बल रहा है।

इन लोगो के चेहरा पर ब्लर किया गया है।

उधर पोस्टर में कुछ है।

यह एक दुकान है जो की एम_डी_एच पास्ता मसाला--

यह एक ग्राउंड है जो कि आव सब खिलाड़ी खेल रहे हैं।

यह एक गार्डन है जोकि बाहर कुछ छपे हुए हैं।

पेड़ लगे हुए है आगे हल्का सा हिरन छपा हुआ है आगे एक घर दिख रहा है।

यह एक बक्सा है जोकि ईटा के ऊपर रखा गया है।

यहां पे दो ठो आदमीन के चेहरा पर ब्लर किया गया है।

नीचे छोटे छोटे जिम करने वाले रखे गए हैं।